बहुत सारे पेड़ हेंगी एक आंटी बेठी हुई हेंग बेंच ऊपर बहुत बड़े ग्राउंड है जिसके ऊपर आधी तरफ घास है आधी तरफ नहीं है।

बहुत बड़ा रोड है जहां पर जाम लगा हुआ है ट्रैफिक जैम है और यहां पर एक ए येलो कलर का ट्रक खड़ा हुआ है उसके आगे बहुत सारे ट्रक हेंगे और---

जहां पर बहुत सारे बच्चे है औरते है आंटियां है और इनके एक बीच मे एक फॉल्ट फॉल्टन है।

बहुत अच्छा घर है जिसके नीचे एक ऑफिस बना हुआ है और तीन मंजिला चार मंजिला घर है और साइड में कांच की व विंडोज लगी हुई है नीचे कांच का आ सामान रखा हुआ है और कपड़े भी टंगे हुए --

कुछ रखा हुआ है एक बच्ची पेपर पे कुछ पेंसिल से बना रही है यहाँ पे एक मेम भी खड़ी है एक बच्ची बेंच पर बैठी हुई है साइड में छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है एक शटर भी लगा हुआ है एक बच्चा मास्क लगाए --

एक औरत खड़ी हुई हैं छतरी लगाए और पूरा चर्च डेकोरेट है सर्किटो से कुछ लाल लाइटें लागी है कुछ ग्रीन ऊपर स्टार लगे हुए ।

जहाँ पर एक अंकल अंदर अपने पैसे निकालने ए.टी.एम. मशीन में से बाहर ए.टी.एम. का बोर्ड लगा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया .